यह ड्राई क्लीनर का दुकान है जिसमें लोग कपड़े अपना ड्राई क्लीन करा के ले जा रहें हैं। यहाँ पे एक कस्टमर बात कर रहा है। उसका शायद कपड़ा इसी दुकान में है तो उसको पूछ रहा है की हुआ की नहीं हुआ है। ये बहुत अच्छा नजारा है।

कलरफुल डिब्बे के अंदर पैक भी है। बहुत अच्छा दिख रहा --